उम्म एक लेडी है जिसने रेड टी-शर्ट पहन रखी दे रखी उसके आस-पास एक बच्ची खड़ी है।

की कार्टेंस है डीजे सिस्टम है फ्लावर है।

अलग अलग तरीके के कैप हैं जिसमें अलग अलग तरीके के सामानस मिल के सामान मिलते--

तंबू से टेंट को खड़ा किया हुआ है। दो टेंट लगे हुए--